दिख रहा है। ये कोई कर्मचारी हो सकता है। कुछ दरवाजे बंद है।

हो सकता है बैटरी वाली भी गाड़ियों को आजकल तो यही चल रही है।

लगे हैं बड़े बड़े आसमान साफ है कुछ बदल दिखाई दे रहे हैं।

कोई रेस्टोरेंट है सुंदर सा टेबल कुर्सी लगी है दीवार पे खड़ी है।

और अच्छा कलर कॉन्बिनेशन किया हुआ है एक खाली है।

पिट्ठू बैग पड़े हैं अटैचिया पड़ी हैं थैले पड़े हैं।

दीवार पर ए_सी लगी है बहोत सी दरवाजे खिड़कियां परदे लगे हुए हैं।

बीच में एक थंबा है लाइटिंग के लिए किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं।

शायद कोई नृत्य कर रही हैं।